इस पिक्चर में हमें एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें एक नदी दिखाई दे रही है।

ये फोटो एक क्लास रूम की दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें एक साड़ी की दुकान दिखाई--